मेरे प्यारे देशवासियो
आमतौर पर मन की बात उसमें मैं कई विषयों को ले करके आता हूँ
लेकिन आज देश और दुनिया के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कोरोना वैश्विक महामारी से आया हुआ ये भयंकर संकट
ऐसे में मैं और कुछ बातें करूं वो उचित नहीं होगा
लेकिन सबसे पहले मैं सभी देशवासियों से क्षमा माँगता हूँ
और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरुर क्षमा करेंगें क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही हैं खास करके मेरे गरीब भाईबहनों को देखता हूँ तो जरुर लगता है कि उनको लगता होगा की ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है हमें इस मुसीबत में डाल दिया
उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूँ
हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रखा है
मैं आपकी दिक्कतें समझता हूँ आपकी परेशानी भी समझता हूँ लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ़ लड़ाई के लिए ये कदम उठाये बिना कोई रास्ता नहीं था
कोरोना के खिलाफ़ लड़ाई जीवन और मृत्य के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे
किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए लेकिन दुनिया के हालात देखने के बाद लगता है कि यही एक रास्ता बचा है
आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखना है
मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है कठिनाई हुई है इसके लिए क्षमा मांगता हूँ
साथियों हमारे यहाँ कहा गया है एवं एवं विकारः अपी तरुन्हा साध्यते सुखं यानि बीमारी और उसके प्रकोप से शुरुआत में ही निबटना चाहिए
बाद में रोग असाध्य हो जाते हैं तब इलाज भी मुश्किल हो जाता है
और आज पूरा हिंदुस्तान हर हिन्दुस्तानी यही कर रहा है भाइयोंबहनों माताओं बुजर्गो कोरोना वायरस ने दुनिया को क़ैद कर दिया है
ये ज्ञान विज्ञान गरीब संपन्न कमज़ोर ताक़तवर हर किसी को चुनौती दे रहा है
ये ना तो राष्ट्र की सीमाओं में बंधा है न ही ये कोई क्षेत्र देखता है और न ही कोई मौसम
ये वायरस इंसान को मारने पर उसे समाप्त करने की जिद उठाकर बैठा है और इसीलिए सभी लोगों को पूरी मानवजाति को इस वायरस के ख़त्म करने के लिए एकजुट होकर संकल्प लेना ही होगा
कुछ लोगों को लगता है कि वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं तो ऐसा करके वो मानो जैसे दूसरों की मदद कर रहे हैं
अरे भाई ये भ्रम पालना सही नहीं है
ये लॉकडाउन आपके खुद के बचने के लिए है
आपको अपने को बचाना है अपने परिवार को बचाना है
अभी आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह धैर्य दिखाना ही है लक्ष्मणरेखा का पालन करना ही है
साथियों मैं यह भी जानता हूँ कि कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता नियम नहीं तोड़ना चाहता लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब भी वो स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं
ऐसे लोगों को यही कहूँगा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कोरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जायेगा
दुनिया भर में बहुत से लोगों को कुछ इसी तरह की खुशफ़हमी थी
आज ये सब पछता रहे हैं
साथियों हमारे यहाँ कहा गया है आर्योग्यम परं भागय्म स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनं यानि आरोग्य ही सबसे बड़ा भाग्य है
दुनिया में सभी सुख का साधन स्वास्थ्य ही है
ऐसे में नियम तोड़ने वाले अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं
साथियों इस लड़ाई के अनेकों योद्धा ऐसे हैं जो घरों में नहीं घरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं
जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्डियर्स हैं
ख़ासकर के हमारी नर्सेज बहनें हैं नर्सेज का काम करने वाले भाई हैं डॉक्टर हैं पैरामेडिकल स्टाफ हैं
ऐसे साथी जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं
आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी है
बीते दिनों में मैंने ऐसे कुछ लोगों से फ़ोन पर बात की है उनका उत्साह भी बढ़ाया है और उनसे बातें करके मेरा भी उत्साह बढ़ा है
मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है मेरा बहुत मन था इसलिए इस बार मन की बात में ऐसे साथियों के अनुभव उनसे हुई बातचीत उसमें से कुछ बातें आपसे साझा करूँ
सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे श्री रामगम्पा तेजा जी
वैसे तो वे इत प्रोफेशनल हैं आइये उनके अनुभव सुनते हैं
यस राम
नमस्ते जी
हाँ राम नमस्ते
नमस्ते नमस्ते
मैंने सुना है कि आप कोरोना वायरस के इस गंभीर संकट से बाहर निकले हैं
जरुर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था
बताइये आप ये सारे संकट से निकले हैं तो अपना अनुभव मैं सुनना चाहता था
मैं इत सेक्टर का एम्प्लॉई हूँ
काम की वजह से दुबई गया था मैं मीटिंग्स के लिए
वहां पर जानेअनजाने ऐसे हो गया था
वापस आते ही फीवर वो सब चालू हो गया था जी
तो पांचछः दिन के बाद डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस का टेस्ट की और तब पॉजिटिव आ गया था
तब गांधी हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैदराबाद में वहां पे एडमिट किया था मुझे और उसके बाद 14 दिन के बाद ठीक हो गया था मैं और डिसचार्ज हो गया था
तो थोड़ा डरावना था ये सब
यानी जब आपको संक्रमण का पता चला
और ये उसके पहले पता तो होगा ही कि ये वायरस बहुत भयंकर है तकलीफ़ लग रहा है
तो जब आपके साथ हुआ तब आपको क्या एकदम से इमीडिएट क्या रिस्पांस था आपका
पहले तो बहुत डर गया था पहले तो बिलीव भी नहीं कर रहा था मैं कि हो गया ऐसा कैसा हुआ था
क्योंकि इंडिया में किसी को दोतीन लोगों को आया था तो कुछ नहीं पता था उसके बारे में
हॉस्पिटल में जब एडमिट किया था तब मुझे क्वारंटाइन में रखे थे
तब तो पहले दोतीन दिन पूरा ऐसे ही चला गया था लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेस जो है न
वो बहुत अच्छे थे मेरे साथ
हर दिन मुझे कॉल करके मुझसे बात कर रहे थे और कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा आप ठीक हो जाओगे ऐसे बात करते रहते थे
दिन में दोतीन बार डॉक्टर बात करते थे नर्स भी बात करते थे
तो पहले जब डर था लेकिन उसके बाद ऐसे लगा कि हाँ इतने अच्छे लोगों के साथ हूँ वो कुछ उनको पता है कि क्या करना है एंड आई विल गेट बेटर ऐसे लगा था
परिवार के लोगों की मनःस्थिति क्या थी
जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था पहले तोसब बहुत स्ट्रेस में थे
ज्यादा अटेंशन वो सब था
लेकिन हाँ सबसे पहले तो उनका भी टेस्ट किए थे
सबका नेगेटिव आ गया था वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिये हमारे फैमिली के लिये और सबके लिये जो मेरे आसपास थे
उसके बाद तो हर दिन इम्प्रूवमेंट दिख रहे थे
डॉक्टर हमसे बात कर रहे थे
वो बता रहे थे परिवार को भी
आपने स्वयं ने क्याक्या सावधानियाँ रखी आपने
परिवार की क्या सावधानियां रखी
परिवार के लिये तो पहले उसके बारे में जब पता चला तब तो मैं क्वारंटाइन में था लेकिन क्वारंटाइन के बाद भी डॉक्टर्स ने बताया था कि और 14 दिन घर पे ही रहना है और अपने रूम में रहना और सेल्फ को हाउस क्वारंटाइन रखने के लिए बोले थे
तो आने के बाद भी मैं अपने घर में ही हूँ मेरे ही रूम में रहता हूँ ज्यादातर मास्क पहनकर ही रहता हूँ दिनभर जब भी बाहर खाने के लिये कुछ होगा hand वाशिंग वो सब इम्पोर्टेंट है
चलिये राम आप स्वस्थ होकर के आये हैं
आपको और आपके परिवार को मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं
लेकिन मैं चाहूंगा कि आपका ये अनुभव
आप तो इत प्रोफेशन में हैं
तो ऑडियो बनाकर के
लोगों को शेयर कीजिये बहुत सोशल मीडिया में विरल कीजिये
तो क्या होगा कि लोग डर भी नहीं जायेंगे एटी थे सामे टाइम केयर करने से कैसे बच सकते हैं वो भी बड़े आराम से लोगों तक पहुँच जायेगा
हाँ जी ये ऐसा है कि बाहर आके देख रहा हूँ सब क्वारंटाइन मतलब एक जैल में जाने के जैसा लोग सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है
सबको पता होना चाहिये कि गवर्नमेंट क्वारंटाइन उनके लिये है उनके परिवार के लिये ही है
तो उसके बारे में ज्यादातर लोगों को बोलना चाहता हूँ कि टेस्ट करवाओ क्वारंटाइन मतलब डरना मत
ओन क्वारंटाइन मतलब वो स्टिग्मा नहीं होनी चाहिये उसके ऊपर
चलिए राम बहुतबहुत शुभकामनाएं आपको
थांक यू
थांक यू भैया थैंक्स आ लोट
थांक यू
जैसा कि राम ने बताया कि उन्होंने हर उस निर्देश का पालन किया जो इनको कोरोना की आशंका होने के बाद डॉक्टरों ने दिए इसी का परिणाम है कि आज वो स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं
हमारे साथ ऐसे ही एक और साथी जुड़े हैं जिन्होंने कोरोना को पराजित किया है और उनका तो पूरा परिवार इस संकट में फँस गया था
नौजवान बेटा भी फँस गया था
आइए आगरा के श्रीमान अशोक कपूर के साथ हम बात करते हैं
अशोक जी नमस्ते
नमस्कार जी
मेरा सौभाग्य है जी आपसे बात हो रही है
चलिए हमारा भी सौभाग्य है मैंने फ़ोन इसलिये किया क्योंकि आपका पूरा परिवार इस समय संकट में फंसा था
जी जी जी
तो मैं जरुर जानना चाहूंगा कि आपको ये समस्या इस संक्रमण का पता कैसे चला क्या हुआ अस्पताल में क्या हुआ ताकि मैं आपकी बात सुनकर अगर कोई चीज़ें देश को बताने जैसी होगी तो मैं उसका उपयोग करूँगा
बिलकुल साहब
ऐसा था कि मेरे दो बेटे हैं
ये इटाली गए थे
वहां पर फेयर था शोएस का
हम यहाँ जूते का काम करते हैं जी फैक्ट्री है मैन्यूफैक्चरिंग का
तो वहां गए थे इटाली फेयर पे
जब ये वापिस आये न
तो हमारा दामाद भी गया था वो दिल्ली रहते हैं
तो उनको थोड़ी प्रोब्लेम हुई तो वो हॉस्पिटल चले गए राम मनोहर लोहिया
तो उन्होंने उनको पॉजिटिव बताया
उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया सफदरजंग
हमको वहां से फ़ोन आया कि आप भी उनके साथ गए थे आप भी टेस्ट करायें तो दोनों बेटे चले गये टेस्ट कराने
यहीं अग्रा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में
अग्रा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वालों ने इनको बोला कि आप अपने परिवार को भी बुला लें
कहीं कोई ऐसी बात ना हो
अल्टीमेटली क्या हुआ जी हम सब गए
तो नेक्स्ट डे उन्होंने बताया कि आपके जो छः जने जो हैं मेरे दोनों बेटे मैं मेरी वाइफ मैंने वैसे सेवेंटी थ्री यियर ओल्ड हूँ मेरी वाइफ और मेरे बेटे की वाइफ और मेरा ग्रैंडसन वो सोलह साल का है
तो हम छः का उन्होंने पॉजिटिव बताया तो आप उन्हें दिल्ली ले जाना है
ओह माय गोड
हम सिर डरे नहीं
हमने कहा ठीक है अच्छा है पता लग गया
हम लोग दिल्ली चले गए सफदरजंग हॉस्पिटल
ये आगरा वालों ने ही भेजा उन्होंने दो हमको एम्बुलेंस दी
कोइ चार्ज नहीं किया
उनकी बड़ी मेहरबानी है आगरा के डॉक्टर्स की एडमिनिस्ट्रेशन की
पूरा उन्होंने हमें सहयोग किया
एम्बुलेंस से आये आप
हां जी एम्बुलेंस से
ठीकठाक थे बैठ के जैसे उसमें बैठ के आते हैं
हमको उन्होंने दो एम्बुलेंस दे दी
संग में डॉक्टर भी थे और हमको उन्होंने सफदरजंग हॉस्पिटल छोड़ दिया
सफदरजंग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने अलरेडी वो खड़े थे वहां पर गेट पे तो उन्होंने हमको जो वार्ड था वहां पर हमको उन्होंने शिफ्ट कर दिया
हम छः को उन्होंने अलगअलग रूम दिया
अच्छे रूम थे सबकुछ था
तो सिर फिर हम 14 दिन वहां हॉस्पिटल में अकेले रहते थे
और डॉक्टरों का जहां तक बात है बहुत सहयोग रहा जी बड़ा अच्छा उन्होंने हमको ट्रीट किया चाहे वो स्टाफ हो
वो एक्चुअली वो अपनी ड्रेस पहनकर आते थे न सिर पता नहीं चलता था कि ये डॉक्टर है या वार्ड बॉय है या नर्स है
और जो कहते थे हम मान लेते थे
फिलहाल हमको किसी भी तरह की 1 भी प्रोब्लेम नहीं आयी
आपका आत्मविश्वास भी बड़ा मजबूत दिखता है
जी सिर आई एएम परफेक्ट हां जी
मैंने तो बल्कि सिर अपने घुटनों का भी आपरेशन कराया हुआ है
एवेन थेन आई एएम परफेक्ट
नहीं लेकिन जब इतना बड़ा संकट परिवार के सबको आ गया और 16 साल के बच्चे तक पहुँच गया
उसका पेपर था सिर आईसीएसई के पेपर थे ना तो उसका पेपर था तो हमने नहीं दिये पेपर मैंने देखी जायेगी बाद में
ये तो ज़िंदगी रहेगी तो सब पेपर हो जायेंगे
चलिये आपका अनुभव इसमें काम आया
पूरे परिवार को विश्वास भी दिलाया हिम्मत भी दिलाई
जी हमने पूरे परिवार को गए एकदूसरे का वहां सहारा रहा मिलते नहीं थे
फ़ोन पर बात कर लेते थे
मिलतेजुलते नहीं थे और डॉक्टरों ने पूरी हमारी केयर की जितनी होनी चाहिए
हम उनके आभारी हैं उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ किया
जो स्टाफ नर्सेस थी उन्होंने पूरा हमको सहयोग दिया है सिर
चलिये मेरी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुतबहुत शुभकामनाएं हैं
थांक यू जी
हम बड़े खुश हैं कि आपसे मेरी बात हो गयी है
नहीं हम भी जो
उसके बाद भी सिर हमारे लिए कोई किसी तरह की मतलब अवेयरनेस के लिए कहीं जाना हो कुछ करना हो हम हर वक़्त तैयार हैं
नहीं आप अपने तरीके से आगरा में करिये
कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाइए
बिलकुल बिलकुल
गरीब की चिन्ता कीजिये और नियमों का लोग पालन करें
लोगों को समझाइये कि आपका परिवार इस बीमारी में फंसा था लेकिन आपने नियमों का पालन करके अपने परिवार को बचाया सब लोग अगर नियमों का पालन करें तो देश बच जाएगा
हमने सर मोदी सर कि हमने अपना वीडियो वगैरह बना करके ना चैनल्स में दिया है
चैनल्स वालों ने दिखाया भी है इसलिए कि लोगों में अवेयरनेस रहे और
सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर करना चाहिये
जी जी और हम अपनी कॉलोनी में जहाँ हम रहते हैं
साफ़सुथरी कॉलोनी है सबको हमने कह दिया कि देखो जी हम आ गए हैं तो डरे नहीं
किसी को कोई प्रोब्लेम है जा के टेस्ट करायें
और जो लोग हमारे संग मिले होंगे जो टेस्ट करवाए ईश्वर की दया से ठीक रहे
चलिए बहुत शुभकामनाएं सबको
साथियो
हम अशोक जी और उनके परिवार के दीर्घायु की कामना करते हैं जैसा कि इन्होंने कहा कि पैनिक हुए बिना डरे बिना समय पर सही कदम उठाना समय पर डाक्टरों से संपर्क करना और उचित सावधानी रखते हुए इस महामारी को हम पराजित कर सकते हैं
साथियों हम मेडिकल स्तर पर इस महामारी से कैसे निपट रहे हैं इसके अनुभव जानने के लिए मैंने कुछ डाक्टरों से बात की जो इस लड़ाई में पहली पंक्ति में मोर्चा संभाले हुए हैं
रोजमर्रा की उनकी गतिविधि इन्ही पेशोंटो पेशेंट्स के साथ पड़ती है
आइये हमारे साथ दिल्ली से डाक्टर नीतेश गुप्ता जुड़े हैं
नमस्ते डॉक्टर
नमस्ते सर
नमस्ते नितीश जी आप तो बिलकुल मोर्चे पर डटे हुए हो तो मैं जानना चाहता हूँ कि अस्पतालों में बाकी आपके साथियों का मूड कैसा है क्या है ज़रा
सबका मूड अपबीट है
आपका आशीर्वाद सबके साथ है
आपने दिया हुआ सारा हॉस्पिटल को जो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं जो भी चीज़ हम माँग रहे हैं आप सब प्रोवाइड कर रहे हैं
तो हम लोग बिलकुल जैसे आर्मी बॉर्डर पर लड़ी रहती है हम लोग बिलकुल वैसे ही लगे हुए हैं
और हमारा सिर्फ एक ही कर्त्तव्य है कि पेशेंट ठीक होकर घर जाए
आपकी बात सही है ये युद्ध जैसा स्थिति है और आप ही सब मोर्चा संभाले बैठे हो
हाँ जी सर
आपको तो इलाज के साथसाथ मरीज़ की काउंसलिंग भी करनी पड़ती होगी
हां जी सर वो सबसे ज्यादा जरुरी चीज है
क्योंकि मरीज़ एकदम सुनके एकदम से डर जाता है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ
उनको समझाना होता है कुछ नहीं है अगले 14 दिन आप ठीक होंगे आप घर जायेंगे बिलकुल
तो हम अभी तक ऐसे 16 मरीजों को घर भेज चुके हैं
तो जब आप बात करते हैं तो ओवरॉल क्या आता है आपके सामने जब डरे हुए लोग हैं तो इनकी चिंता क्या सताती है
उनको यही लगता है कि आगे क्या होगा अब क्या होगा ये तो बिलकुल एकदम जैसा वो बाहर की दुनिया में देखते हैं कि बाहर लोग इतने एक्सपायर हो रहे हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा
तो हम उनको समझाते हैं कि आपकी कौन सी दिक्कत किस दिन ठीक होगी
आपका केस बहुत माइल्ड वाला है
नॉर्मल सर्दीजुकाम वाला जो केस होता है वैसा ही है
तो जैसे वो ठीक हो जाता है पांचसात दिन में आप भी ठीक हो जायेंगे
फिर हम आपके टेस्ट करेंगे जब वो नेगेटिव आयेंगे तो आपको घर भेज सकते हैं
हम तो इसीलिये बारबार दोतीनचार घंटे में उनके पास जाते हैं मिलते हैं उनसे पूछते हैं
उनको सहूलियत होती है पूरे दिन में तो ही उनको अच्छा लगता है
उनका आत्मविश्वास बन जाता है
शुरू में तो डर जाते हैं
शुरू में तो डर जाते हैं बट जब हम समझाते हैं तो दूसरेतीसरे दिन तक जब वो खुद ठीक होने लगते हैं तो उन्हें भी लगता है कि हम ठीक हो सकते हैं
लेकिन सभी डाक्टरों को लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा सेवा का काम उनके जिम्मे आया है ये भाव बनता है सबको
हाँ जी बिलकुल बनता है
हम अपनी टीम को बिलकुल प्रोत्साहित करके रखते हैं कि डरने वाली कोई बात नहीं है कोई ऐसी चीज नहीं है
अगर हम पूरी प्रीकॉशन लेंगे मरीज़ को अच्छे से प्रीकॉशन समझायेंगे कि आपको ऐसे करना है तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी
चलिए डॉक्टर आपके यहाँ तो बहुत बड़ी मात्रा में पेशेंट भी आते हैं और आप बिलकुल जीजान से लगे हैं
आपसे बात करके अच्छा लगा
मैं आपके साथ हूँ
लड़ाई लड़ते रहें
आपका आशीर्वाद रहे यही हम चाहते हैं
बहुत शुभकामनाएं भैया
सिर थांक यू
थांक यूनितीश जी आपको बहुतबहुत साधुवाद
आप जैसे लोगों के प्रयासों से भारत कोरोना के खिलाफ़ लड़ाई में अवश्य विजयी होगा
मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपना ध्यान रखें
अपने साथियों का ध्यान रखें
अपने परिवार का ध्यान रखें
दुनिया का अनुभव बताता है कि इस बीमारी से संक्रमित होने वाले व्यक्तियों कि संख्या अचानक बढती है
अचानक होने वाली इस वृद्धि की वजह से विदेशों में हमने अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य सेवा को जवाब देते हुए देखा है
भारत में ऐसी स्थिति न आये इसके लिए ही हमें निरंतर प्रयास करना है
एक और डाक्टर हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं श्रीमान डाक्टर बोरसे
नमस्ते डॉक्टर
आप तो बिल्कुल एक जनसेवा प्रभुसेवा के मिजाज़ से काम में लगे हैं
तो मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ जो देशवासियो के लिए आपका संदेश चाहिए
एक तो अनेक लोगों के मन में ये प्रश्न है कि कब डॉक्टर्स से संपर्क करना है और कब उनको कोरोना का टेस्ट कराना है एक डॉक्टर के नाते और आप तो पूरी तरह अपने आप को इस कोरोना के मरीजों के लिए समर्पित कर दिया है
तो आपकी बात में बहुत ताकत है तो मैं सुनना चाहता हूँ
सर जी यहाँ मैं यहाँ से बीजेमेडिकल कॉलेज पुणे है
वहाँ पे प्रोफ़ेसर हूँ
और हमारे पुणे म्यूनिसिपल कार्पोरेशन हॉस्पिटल है नायडू हॉस्पिटल करके
वहाँ पे जनवरी 2020 से एक स्क्रीनिंग सेंटर चालू हो गया है
वहाँ पे आज तक 16 सिक्सटीन COVID19 पॉजिटिव केसेस निकले हैं
और वो जो 16 सिक्सटीन COVID19 पॉजिटिव पेशेंट्स जो निकले हैं उसमे से हमने ट्रीटमेंट देके उनको क्वारंटाइन करके आइसोलेशन करके ट्रीटमेंट देके 7 लोगों को डिसचार्ज कर दिया है सिर
और जो अभी बाकि नौ केसेस हैं थे एआरई अलसो वेरी स्टेबल एंड थे एआरई अलसो डोइंग वेल
थाउघ वो वायरस बॉडी में होते हुए भी थे एआरई गेटिंग वेल थे एआरई रिकवरिंग आउट ओएफ थे कोरोना वायरस
और अभी यहाँ पे जो सैंपल साइज तो वैसे छोटा है सर 16 केसेस ही है
लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि यंग पॉपुलेशन भी अफेक्ट हो रही है
और यंग पॉपुलेशन अफेक्ट होते हुए भी जो डिसीज है और वो ज्यादा सीरियस डिसीज नहीं है सर
वो माइल्ड डिसीज है और वो पेशेंट लोग काफ़ी अच्छे हो रहे हैं सर
और अभी ये जो 9 लोग बाकी है वहाँ पे थे एआरई अलसो गोइंग टो बीई वेल थे एआरई नोट गोइंग टो डिटीरियरेट वे एआरई कीपिंग वॉच ओन थेम ओन डेली बेसिस लेकिन थे एआरई अलसो गोइंग टो बीई वेल इन करेंट 45 डेज
जो लोग हमारे यहाँ सस्पेक्ट करके आते हैं इंटरनेशनल ट्रैवेलर्स हैं और जो कॉन्टैक्ट में आये हैं ऐसे लोगों का सर हम स्वाब ले रहें हैं
ये जो ओरोफैरिंजियल स्वाब ले रहे हैं नसल स्वाब ले रहे हैं और नसल स्वाब का रिपोर्ट आने के बाद अगर पॉजिटिव निकला है तो हम पॉजिटिव वार्ड में एडमिट कर रहें हैं
और नेगेटिव अगर निकला तो उनको होम क्वारंटाइन का संदेश देके कैसे लेना है होम क्वारंटाइन क्या करना है होम को जा के ये एडवाइस करके हम उनको घर पे भेज रहें हैं
उसमे क्या समझाते हैं आप घर में रहने के लिए क्याक्या समझाते हैं आप जरा बताइये
सर एक तो अगर होम में ही रहे तो होम में भी क्वारंटाइन आपको करना है
6 फीट डिस्टेंस कम से कम तो आपको रखना है ये पहली बात
दूसरी बात उनको मास्क उसे करना है और बारबार हाथ साफ़ करना है
अगर आपके पास सैनिटाइजेशन नहीं है फिर भी अपना सादा सिम्पल साबुन से और पानी से हाथ साफ़ करना है और वो भी बारबार साफ़ करना है
और जब आपको खाँसी आयेंगी स्नीजिंग होगा तो रुमाल लगा के सादा रुमाल लगा के उसके ऊपर खाँसी करना है
सो थाट वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ड्रॉपलेट्स ज्यादा दूर तक नहीं जाएँ और ज़मीन पे ना गिरे और ज़मीन पे न गिरने की वजह से ज्यादा हाथ लग जाता है तो किसी को फैलना पॉसिबल नही होगा
ये समझा रहे हैं सर
दूसरी बात समझा रहे हैं कि थे एआरई सपोज्ड टो बीई थेरे एएस आ होम क्वारंटाइन थे एआरई नोट सपोज्ड टो गो आउट ओएफ थे होम
अभी तो लॉकडाउन हो गया है इन फैक्ट ड्यूरिंग थिस पार्टिकुलर सिचुएशन थे एआरई सपोज्ड टो बीई लॉकडाउन बट थे एआरई सपोज्ड टो बीई होम क्वारंटाइन अलसो प्रॉपरली फोर मिनिमम 14 डेज के लिए क्वारंटाइन हम उनको सूचित कर रहे हैं सन्देश दे रहे हैं सर
चलिए डॉक्टर आप तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो और समर्पण भाव से कर रहे हो और आपकी पूरी टीम लगी है
मुझे विश्वास है कि हमारे जितने भी पेशेंट्स आये हैं सब सुरक्षित होकर के अपने घर जायेंगे और देश में भी हम इस लड़ाई में जीतेंगे
आप सबके लोगों की मदद से
सर हमें विश्वास है हम जीतेंगे
ये लड़ाई जीत जायेगे
बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर आपको धन्यवाद डॉक्टर
थांक यू थांक यू सिर
हमारे ये तमाम साथी आपको पूरे देश को इस संकट से बाहर निकालने में जुटे हैं
ये जो बातें हमें बताते हैं उन्हें हमें सुनना ही नहीं है बल्कि अपने जीवन में उतारना भी है
आज जब मै डाक्टरों का त्याग़ तपस्या समर्पण देख रहा हूँ तो मुझे आचार्य चरक की कही हुई बात याद आती है
आचार्य चरक ने डाक्टरों के लिए बहुत सटीक बात कही है और आज वो हम अपने डाक्टरों के जीवन में हम देख रहे हैं आचार्य चरक ने कहा है
न आत्मार्थम् न अपि कामार्थम् अतभूत दयां प्रति
वतर्ते यत् चिकित्सायां स सवर्म इति वर्तते
यानी धन और किसी ख़ास कामना को लेकर नहीं बल्कि मरीज की सेवा के लिए दया भाव रखकर कार्य करता है वो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक होता है
साथियों
मानवता से भरी हुई हर नर्स को आज मैंनमन करता हूँ आप सभी जिस सेवा भाव के साथ कार्य करते है वो अतुलनीय हैये भी संयोग है कि इस वर्ष यानि 2020 को पूरा विश्वInternational यियर ओएफ थे नर्स एंड मिडवाइफ के तौर पर मना रहा हैइसका सबंध 200 वर्ष पूर्व 1820 में जन्म लेने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल से जुड़ा हुआ हैजिन्होंने मानव सेवा को नर्सिंग को एक नई पहचान दीएक नई ऊंचाई पर पहुँचायादुनिया की हर नर्स के सेवा भाव को समर्पित ये वर्ष निश्चित तौर पर पूरे नर्सिंग समुदाय के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी बनकरके आया हैमुझे विश्वास है कि आप सभी इस इम्तिहान में ना सिर्फ सफल होंगी बल्कि अनेकों जीवन भी बचाएंगी
आप जैसे तमाम साथियों के हौसले और जज़्बे के कारण ही इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ पा रहे हैं
आप जैसे साथी चाहे वो डाक्टर हों नर्स हों पैरामेडिकल आशा ए एन एम कार्यकर्ता सफाई कर्मचारी हों आपके स्वास्थ्य की भी देश को बहुत चिंता है
इसी को देखते हुए ऐसे करीब 20 लाख साथियों के लिए 50 लाख रुपये तक के स्वास्थ्यबीमा की घोषणा सरकार ने की है ताकि आप इस लड़ाई में और अधिक आत्मविश्वास के साथ देश का नेतृत्व कर सकें
मेरे प्यारे देशवासियों
कोरोनावायरस के खिलाफ़ इस जंग में हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग हैं जो समाज के रियल हेरो हैं और इस परिस्थिति में भी सबसे आगे खड़े हैं
मुझे नरेंद्रमोदी App पर नामो App पर बेंगलुरु के निरंजन सुधाकर हेब्बाले जी ने लिखा है कि ऐसे लोग डेलीलाइफ हीरोज हैं
यह बात सही भी है
ये वो लोग हैं जिनकी वज़ह से हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी आसानी से चलती रहती है
आप कल्पना करिए कि एक दिन आपके घरों में नल में आने वाला पानी बंद हो जाए या फिर आपके घर की बिजली अचानक कट जाए तब ये डेलीलाइफ हीरोज ही होते हैं जो हमारी दिक्क़तों को दूर करते हैं
ज़रा आप अपने पडोस में मौजूद छोटी परचून की दूकान के बारे में सोचिये
आज के इस कठिन समय में वो दुकानदार भी जोख़िम उठा रहा है
आख़िर किसलिए इसलिए न कि आपको ज़रुरत का सामान मिलने में कोई परेशानी ना हो
ठीक इसी प्रकार उन ड्राइवर्स उन वर्कर्स के बारे में सोचिये जो बिना रुके अपने काम में डटे हैं ताकि देश भर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाइचेन में कोई रुकावट ना आये
आपने देखा होगा बैंकिंग सेवाओं को सरकार ने चालू रखा है और बैंकिंगक्षेत्र के हमारे लोग पूरे लगन से पूरे मन से इस लड़ाई का नेतृत्व करते हुए बैंकों को सँभालते हैं आपकी सेवा में मौजूद हैं
आज के समय ये सेवा छोटी नहीं है
उन बैंक के लोगों का भी हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है
बड़ी संख्या में हमारे साथी इकॉमर्स से जुड़ी कम्पनियों में डिलिवरी पर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं
ये लोग इस कठिन दौर में भी ग्रोसरीज की डिलिवरी देने में लगे हुए हैं
ज़रा सोचिये कि आप लॉकडाउन के समय भी जो टीवी देख पा रहे हैं घर में रहते हुए जिस फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब को सुचारू रखने के लिए कोई न कोई अपनी ज़िंदगी खपा रहा है
इस दौरानआप में से अधिकांश लोग जो डिजिटल पेमेंट आसानी से कर पा रहे हैं उसके पीछे भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं
लॉकडाउन के दौरान यही वो लोग हैं जो देश के कामकाज को संभाले हुए हैं
आज सभी देशवासियों की तरफ से मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे अपने लिए भी हर तरह के सेफटी प्रीकॉशंस लें अपना भी ख्याल रखें अपने परिवारजनों का भी ख्याल रखें
मेरे प्यारे देशवासियों
मुझे कुछ ऐसी घटनाओं का पता चला है जिनमें कोरोना वायरस के संदिग्ध या फिर जिन्हें होम क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है उनके साथ कुछ लोग बुरा बर्ताव कर रहे हैं
ऐसी बातें सुनकर मुझे अत्यंत पीड़ा हुई है
यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
हमें ये समझना होगा कि मौजूदा हालात में अभी एक दूसरे से सिर्फ़ सोशल डिस्टेंस बना कर रखना है न कि इमोशनल या ह्यूमन डिस्टेंस
ऐसे लोग कोई अपराधी नहीं हैं बल्कि वायरस के संभावित पीड़ितभर हैं
इन लोगों ने दूसरों को संक्रमण से बचाने के लिए ख़ुद को अलग किया है और क्वारंटाइन में रहे हैं
कई जगह पर लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया है
यहाँ तक कि वायरस के कोई लक्षण नहीं दिखने पर भी उन्होंने ख़ुद को क्वारंटाइन किया
ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे विदेश से लौट करके आये हैं और दोहरी सावधानी बरत रहे हैं
वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में कोई दूसरा व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित ना हो पाए
इसलिए जब लोग ख़ुद इतनी ज़िम्मेदारी दिखा रहे हैं तो उनके साथ ख़राब व्यवहार करना कहीं से भी जायज़ नहीं है बल्कि उनके साथ सहानूभूतिपूर्वक सहयोग करने की आवश्यकता है
कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सोशल इंटरेक्शन को खत्म करना नहीं है वास्तव में ये समय अपने सभी पुराने सामाजिक रिश्तों में नई जान फूँकने का है उन रिश्तों को तरोताज़ा करने का है एक प्रकार से ये समय हमें ये भी बताता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टेंस घटाओ
मैं फिर कहता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टेंस घटाओ
कोटा से यश वर्धन ने नरेंद्रमोदी App पर लिखा है कि वे लॉकडाउन में फैमिली बाउंडिंग को मजबूत कर रहे है
बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स और क्रिकेट खेल रहे हैं
किचेन में नयीनयी डिशेस बना रहे हैं
जबलपुर की निरुपमा हर्षेय जी नरेंद्रमोदी App पर लिखती है कि उन्हें पहली बार रजाई बनाने के अपने शौक को पूरा करने का मौका मिला है यही नहीं वो इसके साथ ही बागवानी का शौक भी पूरा कर रही हैं
वहीँ रायपुर के परीक्षित गुरुग्राम के आर्यमन और झारखण्ड के सूरज जी का पोस्ट पढ़ने को मिला जिसमें उन्होंने अपने स्कूल के दोस्तों के इरियूनियन करने की चर्चा की है
उनका ये आईडीईए काफी रोचक है
हो सकता है कि आपको भी दशकों से अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों से बात करने का मौका ना मिला हो
आप भी इस आईडीईए को आज़मा के देखिए
भुवनेश्वर के प्रत्यूष और कोलकाता की वसुधा ने बताया कि वे आजकल उन किताबों को पढ़ रहे है जिन्हें अब तक पढ़ नहीं पाए थे
सोशल मीडिया में ही मैंने देखा कि कुछ लोगो ने वर्षों से घर में पड़े तबला वीणा जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को निकालकर रियाज़ करना शुरू कर दिया है
आप भी ऐसा कर सकते हैं
इससे आपको संगीत का आनंद तो मिलेगा ही पुरानी यादें भी ताज़ा हो उठेंगी
यानि मुश्किल की इस घड़ी में आपको मुश्किल से एक ऐसा पल मिला है जिसमें आपको ना केवल अपने आप से जुड़ने का मौका मिलेगा बल्कि आप अपने पैशन से भी जुड़ पाएंगे
आपको अपने पुराने दोस्तों और परिवार के साथ भी जुड़ने का पूरा अवसर मिलेगा
नमो एप पर मुझे रुड़की से शशि जी ने पूछा है कि लॉकडाउन के समय में मैं अपनी फिटनेस के लिए क्या करता हूँ इन परिस्थितियों में नवरात्रि का उपवास कैसे रखता हूँ मैं एक बार और आपको बता दूँ मैंने आपको बाहर निकलने के लिए मना किया है लेकिन आपको अपने भीतर झाँकने के लिए अवसर भी दिया है
ये मौका है बाहर मत निकलो लेकिन अपने अन्दर प्रवेश करो अपने आप को जानने का प्रयास करो
जहाँ तक नवरात्रि के उपवास की बात है ये मेरी और शक्ति के भक्ति के बीच का विषय है
जहाँ तक फिटनेस की बात है मुझे लगता है कि बात लम्बी हो जाएगी तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सोशल मीडिया में मैं क्या करता हूँ उसके विषय में कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा
नरेंद्रमोदी App पर आप जरूर उस वीडियो को देखेंगे
जो मैं करता हूँ संभवतः उसमें से कुछ बातें आपके काम आ जाए लेकिन एक बात समझ लीजिए कि मैं फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही मैं योगा टीचर हूँ मैं सिर्फ प्रैक्टीशनर हूँ
हां ये जरूर मानता हूँ योग के कुछ आसनों से मुझे बहुत लाभ हुआ है
लॉकडाउन के दौरान आपको भी हो सकता है ये बातें कुछ काम आ जाए
कोरोना के ख़िलाफ़ ये युद्ध अभूतपूर्व भी है और चुनौतीपूर्ण भी
इसलिए इस दौरान लिए जा रहे फैसले भी ऐसे हैं जो दुनिया के इतिहास में कभी देखने और सुनने को नहीं मिले
कोरोना को रोकने के लिए जो तमाम कदम भारतवासियों ने उठाए हैं जो प्रयास अभी हम कर रहे हैं वही भारत को कोरोना महामारी पर जीत दिलायेंगे
एकएक भारतीय का संयम और संकल्प भी हमें मुश्किल स्थिति से बाहर निकालेगा
साथसाथ ग़रीबों के प्रति हमारी संवेदनाएँ और अधिक तीव्र होनी चाहिये
हमारी मानवता का वास इस बात मे है कि कहीं पर भी कोई ग़रीब दुखी भूखा नज़र आता है तो इस संकट की घड़ी में हम पहले उसका पेट भरेंगे उसका जरूरत की चिंता करेंगे और ये हिंदुस्तान कर सकता है
ये हमारे संस्कार हैं ये हमारी संस्कृति है
मेरे प्यारे देशवासियो
आज हर भारतीय अपने जीवन की रक्षा के लिए घर मे बंद है लेकिन आने वाले समय में यही हिन्दुस्तानी अपने देश के विकास के लिए सारी दीवारों को तोड़कर आगे निकलेगा देश को आगे ले जाएगा
आप अपने परिवार के साथ घर पर रहिए सुरक्षित और सावधान रहिए हमें ये जंग जीतना है
जरूर जीतेगें
मन की बात के लिए फिर अगले महीने मिलेगें और तब तक इस संकटों को मात करने में हम सफल हो भी जाएँ इसी एक कल्पना के साथ इसी एक शुभकामना के साथ आप सबको बहुतबहुत धन्यवाद